यहां एक झोपड़ी दिखाई दे रही--

है और कुछ बैनर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक बहुत बड़ा--

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

है एक मूर्ति में ब्लर दिखाई दे रहा है।

एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

सजीव मौला दिखाई दे रही--

एक बहोत बड़ा बैनर दिखाई दे रहा--

यहां एक बहुत बड़ी झील दिखाई दे रही है।

कुछ गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--

यहां एक बांध दिखाई--

दे रहा है और बहुत सा पानी दिखाई दे रहा है।

और कुछ लोग चलते हुए नजर--

दूर बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक कैफे दिखाई दे रहा है।

यहां एक रोड दिखाई--

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक गेट दिखाई दे रहा है।

है जिसमें कुछ कपड़े पहनाए हुए दिखाई दे रहे--

कुच् सोफे दिखाई दे रहे--

एक बहुत बड़ा रोड दिखाई दे रहा है एक--

दिखाई दे रही है।

हैं एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

के पौधे दिखाई दे रहे--

एक पेटम का स्कैनर दिखाई दे रहा--

यहां पर कुछ बाइक दिखाई दे रहे है।

घर दिखाई दे रहा हैं।

यहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही--

कुछ लाइट्स दिखाई दे रही--

दे रहे हैं नीला आसमान और बादल दिखाई दे रहे हैं।